यह जिस जगह पर खड़े हैं उनकी चारो तरफ की दीवारें ईंट से बनी हुई हैं।

इस चित्र में हमें बहुत सारे बच्चे व्यायाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं रोज़ नियमित व्यायाम करने से --

व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है तथा जीवन में उसे कोई भी रोग नहीं हो सकता है।

ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा आयू में वृद्धि करते हैं इसलिए हमें फल और सब्ज़ियों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए ।

पूजा करने जाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं।

इस दृश्य में हमें पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहाँ से गाड़ियों में पेट्रोल भरा जाता है जिसकी सहायता से --